ये एक यहाँ पे दुकान है वैज सोया चैंप की --

ये एक यहां पे बड़ी सी बहोत सारी दुकान में यहां पे--

और यहाँ पे बाहिर बहुत सारे कुरकुरे हैं चिप्स हैं पोलोरिंग्स हैं।

और उसके चेयर्स भी है यहाँ पे तकिये रखे गए हैं या --

हाँ पे आदमी भी दिख रहा है यहाँ पे सामने टेबल भी हैं पॉट्स भी हैं यहाँ पे --

ये एक यहाँ पे बड़ाााा सा चर्च दिख रहा है।

यहां पे ये एक बड़ा सा योगा भवन है।

यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे यहाँ पे पौधे हैं पॉट्स हैं।